जिसके आगे शब्दों में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है।

है फेन भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ कुछ ट्यूबलाइट भी नज़र आ रही है हैं जो --

और ये कोई दुकान का दृश्य है।

डम्बल उठाते हुए नजर आ रहा है और उसी के पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ भी नजर आ रहा है।

पानी का कंप कैंपर भी नजर आ रहा है और छत के ऊपर पंखा भी दिखाई दे रहा है।

यह एक किताबों की दुकान है इसमें--

इसमें एक ट्यूबलाइट भी दिखाई दे री है और इसमें कुछ और भी सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

चन्द्रलोहार बनाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसके पीछे दो अलमारी भी दिखाई दे रही है।

छोटे छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रही है और इन पौधों में एक औरत पाइप के द्वारा पानी डालते हुए नजर आ रही है और --

ओ जमीन पे एक झाडू भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

बाइक में लगने वाला स्टीकर भी है गाड़ियों में लगने वाला नंबर प्लेट दिखाई दे रही है।

कंपलेक्स नजर आ रहा है जिसमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इस बिल्डिंग के आगे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।